टिशू पेपर दिखाई दे रहे हैं गिलास दिखाई दे रहे हैं दो दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में बहोत सारे पेपर दिखाई दे रहा हैं जिसमे बत्तख की डायनासोर की बिल्ली की चित्र बनाया हुआ हैं।

काइट की भी चित्र बनाई हुई है एक नांव दिखाई दे रही है और एक

घूम सुपारी के झाड़ दिखाई दे रहे हैं बोहोत सारे नारियल के झाड़ दिखाई दे रहे हैं मिट्टी दिखाई दे रही है बोहोत सारेघाँस फूँस दिखाई दे रहे है।

फूलों की माला से सजा हुआ दिखाई दे रही है सीढ़ी दिखाई दे रही है डब्बे दिख़ --

काले-काले कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है पीछे दीवार दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की नीचे जमीन जिसका कलर ग्रे दिखाई दे रही--

लोखंड के बहुत सारे सामान दिखाई दे रहे हैं नीचे मिट्टी दिखाई दे रही है और रसल भर के भी बहुत सारे सामान दिखाई दे रहे हैं टेबल दिखाई दे रहा है।